और अंदर जाने के लिए शीशे का दरवाजा लगा हुआ है और बाहर एक लोहे का गेट लगा हुआ है जहाँ से लोग अंदर आते हैं और छोटे-छोटे गमले लगे हुए पेड़ लगे हुए --

ऊपर स्वर्ग दिख रहा है बादल दिख रहे हैं और बड़े-बड़े पेड़ है जिन्होंने बिल्डिंग को ढक के र--

बात को रखने आया हुआ हैं और यहाँ पे छह सात लोग है एक आगे ऑफिसर है और उसके पीछे पंखा है यहाँ बैलून है टावल है ।

इधर-उधर पानी है और आगे ऊपर बादल दिख रहे हैं और सामने लाल कलर का सूर्य ।